पिंक कलर के दिखाई दे रहे है उसके आजू-बाजू अ घना सा म गार्डन दिखाई दे रहा है वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे।

एक मुझे पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जहां पर बड़े-बड़े पेड़ और नीलगिली का पेड़ दिखाई दे रहा है।

उसके आजु बाजु बहोत सारे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे है और बादल से पूरा ये ग्रे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है।

एक डाँक घर है। जहां पर डाँक के सामने एक साइकिल रखी दिखाई दे रहे और एक पोस्ट --

और यहाँ कॉफ़ी का कुछ अम्म ऊपर बहोत सारे कप रखे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कैपेचीनो --

कुछ कॉफी के रेफर रखे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक पार्ट्स की दुकान दिखाई दे रही है जो लोहे के पार्ट्स अ दिखाई दे रहे हैं और एक अ वर्कर --

ये मुझे एक मिट्टी का रोड दिखाई दे रहा है। उसके आजु- बाजू पानी भरा दिखाई दे रहा है। यहां पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जो अ क्लोज दिखाई दे रही हैं उसके सामने जस्ट एक बाइक --

पड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर फूलों की माला भी दिखाई दे रही है।

कुछ शोपीस की पत्तियाँ लगी दिखाई दे रही हैं।

बैंक के सामने एक आदमी साइकिल लेकर खड़े दिखाई दे रहे है। उसके सामने एक बाइक दो स्कूटी --

उसके बाजू में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और जाली वाला कुछ दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के ऊपर एक पेड़-पौधा --

दुकान दिखाई दे रही है। दो लोग दुकान के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहोत सारे --

दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

यह मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जो बहोत पुराना दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ लगे दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे--

वहाँ पर कुछ दुकानें लगी दिखाई दे रही है और कुछ लोग इ-रिक्शा वाले से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक पा एक ठेला दिखाई दे रहा है।

सलून दिखाई दे रहा है जो काँच का बना दिखाई दे रहा है। उसके बाहर एक हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन दिखाई दे रहा है।

ये मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है। जो पेड़-पौधे और उसका बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चार खम्बे लगे दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटर के शेप अलग-अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।